यहाँ एक सड़क का दृश्य दिखाया गया है जहाँ बहुत सारे वाहन आते -जाते हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ --

यहाँ सड़क के बराबर में एक विशाल समुंद्र दिखाया गया है समुंद्र बहुत दूर तक फैला हुआ है समुंद्र के आखरी छोर पर --

सामने ही डांस अकैडमी का बोर्ड लगा हैं।

यहाँ सड़क के किनारे पर दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई गई है दोनों मोटरसाइकिलों पर हेलमेट रखे गए हैं ।

यहाँ एक चारपाई भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ अन्य बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं ।

यहाँ दो व्यक्तियों के सिर्फ पैर दिखाए गए है वे सामने की तरफ एक स्कूटी दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ --

यहाँ साइकिल का समय दिखाया गया है यहाँ एक मैदान में कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ सामने --

वह फर्श पर कही लाल रंग कही पानी बीखरा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ--